हरी घास-फूस में डिजाइनिंग करी हुई है और ऊपर एक पेड़ छाएं आ रही है।

बहोत सारे लोग ड्राइगन और हिंडोला में बैठे हैं। एक लड़का ड्रैगन पर खड़ा है और बहोत सारे --

और कोले के दस्ते के साइड में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

बस स्टैंड का व्यू है जहां पर कुछ बसे खड़ी है ब्लू और वाइट कलर की--

और उसका गेट बंद है और उसके साइड में एक पेड़ है सामने बहुत सारी खिड़कियां दिख रही है।